गाय की फेस उस साइड है और देखी इसकी लंबी पूछ है और यह ब्लैक कलर की है और देखिए जो गौसले है वो जो ऊपर से करकट टाइप के है और--

ये देखिये नदी किनारे का अ रास्ता दिखाया अअ नदी नदी है और देखिये इधर थोड़ा सा अअ जगह है ऊपर देखिए पूल टाइप का बना हुआ है।

और देखिए छोटी-बड़ी सब है और देखिए यहाँ पे एक महिला है जो बच्चे को लेकर सामने की ओर आते हुए दिखाई दे रही है।